जिसमे यह बहोत अच्छा नज़ारा है और यह लोग खाने पीने के लिए आते हैं।

यह देखिए यहाँ समुन्द्र के किनारे बोट खड़ी हुई है । जहाज खड़े हुए हैं और जहाज के ऊपर एक लिफ्--